और पार्क के भीतर एक पहाड़ नुमा जून हरियाली का एक गुम्बद है ।

होटल है। इनके ठीक पास में एक जीना बना हुआ है जो ब्लैक कलर से रंगा हुआ है। कुछ मेजे भी रखी हुई है इसमें कुछ सामान भी रखा --

ये एक कपड़े की दुकान है।

बिल्डिंग में एक गेट लगा हुआ है जो काले रंग का है। बिल्डिंग के ऊपर छत के सामने एक ग्रिल लगी हुई है जो काफी अच्छी लग रही है।

कुछ कार्य चल रहा है। साइड के गेट की तरफ दोनों तरफ --

बिल्डिंग बहोत बड़ी बिल्डिंग है। काफी बड़े बड़े गेट्स नजर आ रहे हैं।